कुछ गर्ल्स योगा कर रहीं हैं सभी की मेट का कलर अलग-अलग है किसी का येलो किसी का पिंक फिरोजी और दीवाल वाइट कलर की पुती हुई है उसमें भी कुछ बना हुआ है।

पर्सन जा रही है जो वाइट कलर का मास्क लगाए हुए है और दूर से एक दुकान दिख रही है जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है।

ये कुछ घूमने की जगह है यहां पर दो स्टेचू भी रखे हुए है।

यहाँ कुछ फंक्शन चल रहा है यहाँ लोग डांस कर रहे हे।

यहाँ बहोत से लोग खड़े हुए है कुछ बैग टांगे हुए हैं तो कुछ ऐसे ही खड़े हुए है दुकान का शटर का कलर येलो और रेड कलर में दिख रहा है।